आसपास कोई नहीं है अच्छी धूप निकली पड़ी है ।

फॉर्चून की दुकान होना मे बहुत जरूरी है।

ये एक स्टेट बैंक का ए_टी_एम है और यहां पे काफी पब्लिक खड़ी है बैंक होना भी जरूरी है।

और हमें अपनी हर जगह की साफ सफाई रखनी चाहिए.

से हेल्प करनी चाहिए और पारक को भी साफ सुथरा--

यहां पे लोग कॉफी पीने आते हैं और दुकान बहुत अच्छी है नाइस दुकान--

उधर वाला भी लाइनें मे तभी सारे लोग आते है ।

अच्छा लगा देखकर --

वहां मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है जय हो जय हो सबकी--

इट्स वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस ओके ओके डन डन डन --

नाइस नाइस दैट्स वेरी नाइस --

सारे आते हैं कोई दिक्कत नहीं है वेरी नाइस देख के बहुत बढ़िया लगा।

कोई दिक्कत नहीं है और बहुत प्यारा लगा वेरी नाइस --

अच्छा लग रहा है नजारा कोई दिक्कत नहीं है सब ओके है ।

और देख के नजारा अच्छा लगा बालकोट वालकोट--

ये चीजें भी होनी चाहिए वेरी नाइस --

बाकी बहुत अच्छा लगा देखकर कोई दिक्कत नहीं है ।

अच्छा लगा देख के वेरी नाइस वेरी नाइस--

लोग किसी को भी चिट्ठी पहुंचा सकते हैं ।

तभी एक दूसरे के यहां पे चिट्ठी पहुंचती है ।